तस्वीर में रेलवे स्टेशन है।

यह पौधे हरे रंग के हैं छवि मे कुछ लोग हैं।

छवि में एक चरखा बना हुआ है जो लाल रंग का है।

पास पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे हरे रंग के हैं।

आसपास गाड़ियां हैं गाडियां का रंग नीला है।

इमारत के अंदर कुर्सियां हैं कुर्सियां पीले रंग की हैं।

ये छवि खुला क्षेत्र का है छवि में खुला क्षेत्र है।

कुर्सियां सफेद और लाल रंग की हैं।

उन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए है छवि में ग्रिल है ग्रिल काले रंग का है।

छवि में एक सोनी का लोगो है जो सफेद रंग का है।

गमले का रंग लाल पीला और सफ़ेद रंग का है।

दिन या व्यक्ति है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसने रंग बिरंगा वस्त्र पहना हुआ है।